यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में आउटलाइनर विंडो के बारे में है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है
यह ट्यूटोरियल देखने के बाद हम सीखेंगे आउटलाइनर विंडो क्या है आउटलाइनर विंडो में एये अरो और कैमेरा आइकन्स क्या हैं
और आउटलाइनर विंडो में डिस्प्ले मेन्यू क्या है
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें
ब्लेंडर में आउटलाइनर डेटा की फ्लोचार्ट सूची है
डिफ़ॉल्ट रूप से यह ब्लेंडर इंटरफेस के ऊपरी दाएँ कोने पर उपलब्ध है
आउटलाइनर विंडो का आकर बदलें
नीचे किनारे पर बायाँ क्लिक करें और इसे नीचे ड्रैग करें
बाएँ किनारे पर बायाँ क्लिक करें और इसे बायीं तरफ ड्रैग करें
हम अब आउटलाइनर विंडो में ऑप्शन्स अधिक स्पष्ट देख सकते हैं
ब्लेंडर विन्डोज़ का आकार कैसे बदलें यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल देखें
होव टो चंगे विंडो टाइप्स इन ब्लेंडर व्यू पर बायाँ क्लिक करें
यहाँ कई सारे ऑप्शन्स हैं जैसे शो रिस्ट्रिक्शन कोलम्न्स शो एक्टिव शो ओर हाइड ओने लेवेल शो हायरार्की डुप्लिकेट एआरईए इंटो न्यू विंडो और टॉगल फुल स्क्रीन
शो रिस्ट्रिक्शन कोलम्न्स को निष्क्रिय करें
यह आउटलाइनर विंडो पर उबलब्ध दायें कोने पर सभी दर्शनीय चुनने योग्य और रेंडरेबल ऑप्शन्स को निष्क्रिय करता है
फिर से व्यू पर बायाँ क्लिक करें
दर्शनीय चुनने योग्य और रेंडरेबल ऑप्शन्स को सामने लाने के लिए शो रिस्ट्रिक्शन कोलम्न्स सक्रिय करें
आउट लाइनर विंडो में क्यूब की बायीं तरफ प्लस सिग्न पर बायाँ क्लिक करें
एक कैस्केड सूची प्रदर्शित होती है
यह आपको चुनित ऑब्जेक्ट की प्रोपर्टिज की एक सूची प्रदर्शित करती है
हम इनकी आगे के ट्यूटोरियल्स में विस्तार में चर्चा करेंगे
एये आपके ऑब्जेक्ट को 3डी व्यू में प्रकट और अदृश्य करता है
उदाहरण स्वरुप क्यूब के लिए एये पर बायाँ क्लिक करें
अब क्यूब 3Dव्यू में नहीं दिखता है
फिर से क्यूब के लिए एये पर बायाँ क्लिक करें
क्यूब को अब 3डी व्यू में देख सकते हैं
एरो 3डी व्यू में आपके ऑब्जेक्ट को चुनने योग्य और न चुनने योग्य बनाता है
उदाहरणस्वरुप क्यूब के लिए अरो पर बायाँ क्लिक करें
3डी व्यू में क्यूब पर दायाँ क्लिक करें
क्यूब को नहीं चुन सकते हैं
फिर से आउटलाइनर विंडो में क्यूब के लिए अरो पर बायाँ क्लिक करें
3डी व्यू में क्यूब पर दायाँ क्लिक करें
क्यूब को अब चुन सकते हैं
कैमेरा आपके ऑब्जेक्ट को रेंडरेबल या नॉन रेंडरेबल बनाता है
क्यूब के लिए कैमेरा पर बायाँ क्लिक करें
सीन को प्रस्तुत करने के लिए अपने कीबोर्ड पर फ़12 दबाएँ
क्यूब रेंडर में प्रदर्शित नहीं है
3डी व्यू में वापस जाने के लिए अपने कीबोर्ड पर esc दबाएँ
फिर से आउट लाइनर विंडो में क्यूब के लिए कैमेरा पर बायाँ क्लिक करें
सीन प्रस्तुत करने के लिए फ़12 दबाएँ
क्यूब को अब रेंडर में देखा जा सकता है
3डी व्यू पर वापस जाने के लिए esc दबाएँ
आउटलाइनर विंडो में सर्च बार पर बायाँ क्लिक करें
यदि आपके सीन में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो यह सर्च टूल सीन में समान वर्गों के ऑब्जेक्ट्स या एक विशिष्ट ऑब्जेक्ट को खोजने में मदद करता है
आउटलाइनर विंडो के सबसे ऊपरी बाएँ कोने का सीन आपके ब्लेंडर सीन के सभी ऑब्जेक्ट्स और उनके सम्बन्धित एलिमेंट्स को सूचीबद्ध करता है
अल्ल सीन्स पर बायाँ क्लिक करें
यह ड्रॉप डाउन सूची डिस्प्ले मेनू है
यह आउटलाइनर पैनल के लिए डिस्प्ले ऑप्शन्स रखता है
करेंट सीन पर बायाँ क्लिक करें
आप वर्तमान सीन में उपलब्ध सभी ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइनर विंडो में सूचीबद्ध देख सकते हैं
डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए करेंट सीन पर बायाँ क्लिक करें
विजिबल लेयर्स पर बायाँ क्लिक करें
एक्टिव लेयर या लेयर्स में उपलब्ध सभी ऑब्जेक्ट्स आउटलाइनर विंडो में सूचीबद्ध हैं
हम लेयर्स के बारे में विस्तार से आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए विजिबल लेयर्स पर बायाँ क्लिक करें
सिलेक्टेड पर बायाँ क्लिक करें
आउटलाइनर केवल उन ऑब्जेक्ट को सूचीबद्ध करता है जो 3डी व्यू में चुनित हैं
डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए सिलेक्टेड पर बायाँ क्लिक करें
एक्टिव पर बायाँ क्लिक करें
आउटलाइनर केवल उस ऑब्जेक्ट को सूचीबद्ध करता है जो 3डी व्यू में सबसे हाल में चुना गया था
डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए एक्टिव पर बायाँ क्लिक करें
सामे टाइप्स पर बायाँ क्लिक करें
जैसा कि नाम से पता चलता है सामे टाइप ऑप्शन आउटलाइनर विंडो में उन सभी ऑब्जेक्ट्स को सूचीबद्ध करता है जो एक ही वर्ग के होते हैं
उदहारणस्वरुप डिफ़ॉल्ट रूप से 3डी व्यू में क्यूब चुनित है
अतः आउटलाइनर सभी मेश ऑब्जेक्ट्स को सीन में सूचीबद्ध करता है
इस उदाहरण में सीन में केवल क्यूब ही मेश ऑब्जेक्ट है
हम मेश ऑब्जेक्ट्स के बारे में विस्तार से ब्लेंडर में एनिमेशन पर अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए सामे टाइप्स पर बायाँ क्लिक करें
ग्रुप्स सीन में सभी समूहीत ऑब्जेक्ट्स को सूचीबद्ध करता है
यहाँ कुछ और अन्य ऑप्शन्स हैं जिन्हें हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
अतः यह आउटलाइनर विंडो का विश्लेषण है
जब बड़े सीन के साथ कार्य कर रहे हों जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो सीन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए आउटलाइनर विंडो बहुत ही लाभदायक टूल बन जाता है
अब एक नई फाइल बनाएँ आउटलाइनर में चुनित को सूचीबद्ध करें और क्यूब को अन रेंडरेबल बनाएँ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
इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक्स पर उपलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialओआरजी nmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद